पौधा भी लगा हुआ है। यहाँ फ़र्श पे बोहत अच्छा अच्छी तरह से डिज़ाइन बनी हुई है।

वहाँ से भी डिज़ाइन बनी हुई है। बोहत बड़ा पार्क है। इसमे घूमने मे बोहत मजा आयेगा।

और यहाँ बाकि कारे भी खड़ी हैं। एक अच्छी जगह लग रही है। यहाँ कार बनती है।

ये एक मार्केट है। मार्केट में बाजार करने के लिए लोग भीड़ लगाए --

तहँ ताजे फल होती हैं और मार्किन --